बन रही दिखाई दे रहा है और --

चक्का-उक्का सब निकाल दिया गया दिखाई दे र --

सजा रहा है वो भी दिखाई दे रहा है फैन भी चल रहा है दिखाई दे रहा है |

वृछ भी दिखाई दे रहा है | आसमान भी दिखाई दे रहा है | बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे --

यहाँ पे मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद के अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं | छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं | एक वृछ भी दिखाई दे रहा है | बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और एक घर रेड कलर से रंगा --

पे एक लड़का दिखाई दे रहा है और जिम मैं गया हुआ दिखाई दे रहा है और --

चार पाँच दुकानें भी दिखाई दे रही है और --

वे दिखाई दे रहा है और --

रहे हैं वह दुकान वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। वह --

से एक होटल दिखाई दे रहा है और होटल मैं बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहा है |